इस तस्वीर में बहुत सारे हारमोनियम और गिटार देखे जा सके हैं।

इस तस्वीर में एक युवक रिसेप्शन पे बैठा हुआ --

इस तस्वीर में एक बेकरी की फोटो दिखाई गई है।

इस तस्वीर में बहुत सारे फल और सब्जियां ट्रे के अंदर रखी हुई है।

और कुछ बाइके दीवाल के पास खड़ी है।